एक क बूटीक का शॉप लग रहा है ।

पिंक कलर का है पर्पल कलर --

अ बाउ उसमें रेड कलर का कपड़ा है ।

ब्लू कलर है और बाजू में बहोत मट्टी है।

अह वीवो नाम लिखा हुआ है ब्लू कलर से और रेड कलर का--

तीन चार जन चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं अ ब्लैक कलर का चेयर है और वो लोग लंच या तो डिनर --